यहां एस_बी_आई कार्ड भी लिखकर दिख रहा है अंदर एक कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।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

यहां बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिख रही है।

पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

येलो रेड व्हाइट ऑरेंज कलर का पीछे भी दो औरत दिख रहा है।

और बहोत सारा लड़की भी दिख रहा है।

हाथ पे बच्चे भी पकड़ रहा है।

यहाँ मुझे बहुत बड़ी सी पानी दिख रही है।

अंदर बहुत सारा गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ मुझे एक घर दिख रहा है।

यह घर टीना का बनाया हुआ है।

यहां सफेद रंग का ब्रिज दिखाई दे रहा है।

हाथ में मार्क भी दिख रहा है।

और क्रॉस भी दिखाई दे रहा है नीचे--